चित्र में मुझे एक कैंटीन सा दिख रहा है। चित्र में मुझे आदमी गमछा बांधे दिख रहा है।

है चित्र में मुझे एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

चित्र में मुझे घर के ऊपर कुछ इमारत सा दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ सामान वगैरा रखा सा दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ सामान वगैरा दिख रहा है।

मुझे छत पे पड़ा मसाला दिख रहा है।

चित्र में मुझे कुछ टमाटर दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारी बॉडी लोशन रखी दिख रही हैं।

चित्र में मुझे अलमारियां बनी दिख रही है।

चित्र में मुझे कुछ लेडिजे दिख रही हैं।

चित्र में मुझे बिल्डिंग कांच सी दिख रही है।

चित्र में मुझे एक लड़का बेठा दिख रहा है।